बगल के साइड में ईंटे की मुक्की बनाए हैं।

जो देखने में बहोत ही सुंदर लग रहा है।

पीछे की तरफ एक छोटी सी नाव दिखाई दे रही है।

इस दृश्य में मैं एक रेलवे स्टेशन देख पा रही हूं।

इस दृश्य में मैं एक जिम का दृश्य देख पा रही हूं।

रेलवे स्टेशन देख पा रही हूं।

जहां पे लोहे का एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है।

आगे की तरफ एक लोहे की बाउंड्री लगाई गई है।

एक रोड देख पा रही हूं।